उस पर सरस्वती शिशु मंदिर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बस के आस-पास बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

--एवं सर्विसिंग सेंटर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसके बाजू में एक खंभा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है सामने बहुत सारी मोटरसाइकिले खड़ी हुई दिखाई--